किसी स्कूल का प्रोग्राम है यहां पर एक लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है पहनी है जूता टाइप का पहनी है फिर लेगिज पहनी है फिर स्कर्ट पहनी है लाल कलर का फिर ऊपर से शर्ट पहनी है ब्लैक कलर का।